घर के अन्दर एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ भी है।

अलग अलग भाषा में वहां इनफार्मेशन दी गई है।

पीछे जो बैंगनी कलर का पर्दा लगा हुआ है जिसको बहोत सुन्दर सुन्दर फूलों से सजाया गया है उसमें लिखा हुआ है बी डी वर्ल्ड स्कूल तो ये स्कूल के फंक्शन का फोटो है।

ये किसी दुकान का चित्र है जिसकी कांच का दरवाजा है।

एक ने सफेद रंग की शर्ट पहनी है और ग्रे कलर की पैंट पहनी है।

ये एक घर का चित्र है जो सफेद और ऑरेंज रंग का है।

थोड़ा अच्छा आगे आने पे एक बहोत बड़ा गेट भीं हैं लोहे का।

उसके चारों तरफ काले रंग की कुर्सियां हैं।

पीछे दीवार के साइड में एक काले रंग की कबर्ड भी रखी है।

ऊपर सफेद रंग का ए_सी लगा हुआ है दीवार पे --

सामने होटल के ग्रीन कलर का शेड बना बनाया गया है पार्किंग के लिए उसके नीचे कुछ गाड़िया भी पार्क --

जिसका ग्लास का दरवाजा है उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है जिस पे आई विनस लिखा हुआ है सा --

बीच में टेबल है जिसने चार ड्रॉवर है।

जिसमें नीचे नी नीला कलर किया हुआ हैं उस काउंटर पे दो आदमी खड़े हुए हैं जो अपना काम कर रहें हैं।

क्योंकि बाहर बहोत सारे रिक्शा देखे जा सकते हैं।

येल्लो हो चुका है वो बहुत सारे बिजली के तार दिखाई भी दे रहे हैं खंभे हैं।

नीचे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है नीचे नदी दिख रही है पानी दिखाई दे रहा है।

जहां पे लोग घूम रहे हैं देख रहे हैं एक बच्चा खड़ा हुआ है रोड पे।

उसने सरिये पकड़े हुए हैं एक आदमी ऊपर पकड़ा हुआ है उन सरियों को।

बिल्डिंग ब्लैक कलर की है उसके बाहर हरे रंग का गेट लगा हुआ है नीचे उतरने के लिए तीन से चार सीढ़ियां दिखाई दे रही है जिससे नीचे उतरा जा सकता है।

इस फोटो मे एक बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है।

देखिए बीच में टापू जैसा भी कुछ है पावर प्लांट है क्या है बिजली के खंभे भी है।

उसके ऊपर शेषनाग बैठे हुए है फन फैलाके पीछे पार्वती माता की तस्वीर है।

बाजू में राधा और कृष्ण जी की तस्वीर है।

दूल्हा दुल्हन बैठे हुए है पीले रंग का कुर्ता पहना है दूल्हे ने और दुल्हन ने लाल और हरे रंग की साड़ी पहनी है पंडित जी मंत्र पड़ रहे है।

शादी संपन्न करवा रहे हैं बाजू में उनके माता पिता हैं पीछे भी दो औरतें खड़ी हुई हैं।

जिसके ऊपर ब्रिज के ऊपर एक आदमी कमर में से हाथ रख के खड़ा हुआ है।

बहुत ऊंचा मंदिर है क्योंकि इतनी लम ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है उसके ऊपर से वो मंदिर दिख रहा है।

ये कोई म्यूजिक संग्रहालय जैसा फोटो है क्योंकि यहां पे छह सात लोगों के स्टैचू रखे हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं रियल नहीं हैं वो।

एक ऊपर खोल के उसका पहिया निकल के साइड में रखा हुआ है दो आदमी काम कर रहे हैं उसमें जिन्होंने नीले कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है।

साइड में सलाद है जिसको अ गुलाब के फूल के आकार में काट कर दिया गया है।

ग्राउंड में पाइपलाइन भी दिखाई दे रही है जिससे शायद पानी डाला जाता है इन पौधों पे।

यर बिल्डिंग है एक पीले रंग की सफेद रंग की बाउंड्री है बाउंड्री के पीछे भी पेड़ दिख रहे हैं उसमें पीले रंग के --

ये एक चर्च का फोटो लग रहा है सब एक लाइन में बैठे हुए हैं पीछे बहोत सारी ब्राइड्स दिखाई दे रहे हैं सामूहिक विवाह का फोटो है ये--

उसके पैरों के पास एक स्टील की पानी की बोतल--

कुछ सामान एक बाजू में टेंपो है जिसमें समान को पैक करके रखा गया हुआ है।

सिर्फ टमाटर ही हैं और कोई दूसरी सब्जी दिखाई नहीं दे रही है।

जिसका रंग हल्का पिला और सफेद पेंट किया है उसको बाहर मस्त सफेद और पीले रंग से डेकोरेट भी किया गया हैं।

लोग रिटेल में सामान लेते हैं उसके बाहर बैरिकेट्स लगे हैं पीले और काले रंग के सामने दो लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो खड़े हैं शायद सामान लेने के लिए।

ये तेल की फैक्ट्री का दृश्य जिसमें तेल को प्रोसेस करके पिपो में भर के भेजा जा रहा है।

यहां पर कंक्रीट की सड़क देखी जा सकती है जो अंदर गांव में जा रही है।

ये एक परचून की दुकान है जिसमें घर में उपयोग होने वाली सभी चीज रखी हुई है।

उसके नीचे पांच पोस्टर्स लगे हैं जिनमें उस ढाबे में क्या मेनू है वह लिख के चिपकाए गया है।

रोड के दोनों तरफ छोटे छोटे पौधों को एक साइज में काट के लगाया गया है।

दोनों तरफ मैदान है खुला जिसमें हरी हरी घास उगी हुई है।

ग्राउंड के बीच में कुर्सियां एक के ऊपर एक लाइन बनाके चार पांच जगह रखी हुई है किसी फंक्शन की तैयारी चल रही है।

दो एंट्रेंस गेट बनाए गए हैं पीले रंग के जिससे अंदर जाया जा सकता है पीछे मंडप बना हुआ है।

जिसके बाहर पे बोर्ड लगा हुआ है रेफरल हॉस्पिटल सी_एच_सी पार्डी पार्डी में है ये --

गार्ड गेट के पास दो आदमी खड़े हुए हैं लाइन से बाइक्स रखी हुई है।